साथ मे बहुत सारे फल दिख रहे है केला एक दो औरत भी दिख रही है।

बहुत सारे घर दिखाई दे रहा है एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक ट्रांसफॉर्म भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे तार दिखाई दे रहा है।

एक सर्फ का पैकेट दिखाई दे रहा है एक गरम मसाला दिखाई दे रहा है साथ में एक फेविक्विक दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे फल दिखाई दे रहा है साथ में एक दो प्लास्टिक दिखाई दे रहा है।

तामने एक अम्म लैपटॉप दिखाई दे रहा है कंप्यूटर एक माउस भी दिखाई दे रहा है।

एक साईकिल भी है और पेटीएम का लोगो हैं और एक सीसीटीवी भी है।

बहुत सारे टीन दिखाई दे रहा है जो पैक है।